और बहुत सारे कॉफी शॉप है।

उसके अंदर ए.सी. लगा हुआ है । साइड एक साइड दुकान बंद है एक साइड दुकान खुला हुआ है।

यहाँ पे एक बहोत सारी टेबल लगे हुए हैं । एक चेयर है और डेस्क के ऊपर बुक वगैरह रखे हुए हैं यहाँ पे एक भी बच्चे नहीं हैं।

यह एक फॉरेस्ट पार्क है जो कि जमुई में है इसके बोर्ड पे लिखा हुआ है वेलकम टू बायो डायवर्सिटी पार्क माधवपुर जमुई फॉरेस्ट डिविजन ।

अ पार्क टाइप में है इसके बगल में एक गेट है। यह लकड़ी से बना हु --

यह एक नेस्के कॉफी का कप है । उसमें चाय रखा हुआ है और ये दूर से म मतलब अ फोटो लिया गया है । इसके दूर में एक घर है वहाँ पे बहोत सारे पेड़ पौधे हैं ।

और कुछ बुद्धा टाफीन ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है।

यहाँ पे फूलों से उम्म से कैसे सजाया गया है कुछ अवॉर्ड भी हैं । तार वगैरा --